ग्रीन कलर की सीरीज लगाए हुए हैं इसके ऊपर से बिल्डिंग से एंड इसके बिल्डिंग के ऊपर एक झंडा भी नजर आ रहा है मुझे।

इस इमेज में मुझे एक कॉलेज का कंपाउंड दिख रहा है कंपाउंड पर लोहे के रौडस लगी हुई है।

उस विंडो पे के ऊपर एक एसी लगी हुई है बाहर गाड़िया खड़ी है साइकिल खड़ी हैऔर एक जेसीबी का काम चालू है।

इस इमेज में वाटरपार्क नजर आ रहा है ग्रीन कलर की स्लाईड नजर आ रही है ग्रीन कलर की स्लाईड के ऊपर--

झूले के आजूबाजू पूरी ग्रीन कलर की पेड़ लगी है पूरी हरियाली दिख रही है।